काफी अच्छा स्टेज बना हुआ है जिस पे काफी कलरफुल लाइट लगी हुई हैं।

तीन व्यक्ति दो आदमी और एक औरत भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

पास ही में कुछ डोरमेट पन्नी के अंदर भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में एक गुफा दिखाई दे रही है जो कि--

बॉलो के ऊपर कुछ लकड़ी के बेड भी रखे हुए हैं।

दरवाजे के बाहर डस्टबिन भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये एक सुपर कंप्यूटर टाइपिंग इंस्टिट्यूट की शॉप है।

नाव लकड़ी की है दो नाव खड़ी हुई हैं और एक नाव--

लड़के के पीछे कुछ पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं।

जिसके आसपास छोटे-छोटे पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

इस पिक्चर में एक काफी बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है।

हॉल में एक लकड़ी की टेबल --

और एक बैठने वाली टेबल भी रखी हुई है।

दीवार के किनारे पर एक कुर्सी रखी हुई दिखाई दे रही है।

ये सब एक लकड़ी के दराज में--

एक मूर्ति की फोटो भी लगी हुई है।

और नीचे कुछ बोर्ड भी लगे हुए हैं।

दीवारों पर कुछ बैलूंस भी लगे हुए हैं।

पार्क में चारों तरफ छोटी-छोटी घास लगी हुई है।

और कुछ बड़े पेड़-पौधे भी नजर आ रहे हैं।

जैसा दिख रहा है उसके बाहर कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और ऊपर आसमान भी दिख रहा है।

यह एक बंधन बैंक है और बैंक के पास ही बंधन एटीएम भी दिखाई दे रहा है।

बंधन बँक पर कांच के दरवाजे लगे हुए हैं और बाहर एक बंधन बँक के नाम से छतरी भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

बंधन बैंक के बाहर कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं।

जो कि काफी डेकोरेशन भी किया हुआ है भगवान की मूर्तियों के पीछे गोल्डन कलर का--

डेकोरेशन किया हुआ है सामने कई व्यक्ति बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

कुछ लकड़ी के कबर्ड्स भी बने हुए हैं जिनके अंदर काफी सारी दवाइयां जमी हुई हैं।

खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं स्टेज पर काफी सारी लाइटिंग दिख रही है।

लोहे के ऐंगल वाली जालियां भी बनी हुई दिखाई दे रही हैं।

पिक्चर में एक घर बनता हुआ दिखाई दे रहा है।

जिसके पास दो आदमी खड़े हुए दिख रहे हैं एक आदमी टंकी के ऊपर खड़ा हुआ है।

पास ही में कुछ पेड़-पौधे भी दिख रहे हैं।

कुछ कॉपी किताबें जमीन पर इकट्ठा करके भी रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

आदमी ने पर्पल कलर की टी-शर्ट पहनी है।

ये सारे ही घर लाल कलर के हैं और आसपास इनके हरियाली दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में एक कमरा दिखाई दे रहा है जिसमें एक बेड बिछा हुआ है बेड के ऊपर एक गद्दा बिछा हुआ है गद्दे के --

इस पिक्चर में एक सैलून दिखाई दे रहा है जिसमें एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है।